एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो पीठ पर बैग टाँगा हुआ है | एक साइड में काले कलर की कार खड़ी हुई है | नीला --

यहाँ पर एक कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है | कॉलोनी का निर्माण बहुत बड़ी जगह पर हो रहा है।

यहाँ पर एक राजा के महल का बाउन्ड्री दिख रही है बाउन्ड्री में दो दरवाजे दिख रहे है पल्ले नहीं दिख रहे है ऊपर नीला आकाश दिख रहा है।

एक हॉल में इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में कूलर पंखे फ्रिज वाशिंग मशीन ऐ_सी --

ऐसे बहुत से सामान दिख रहे हैं दीवार पर कुछ सूचना लिखी हुई है एक क्लीन अप भी रखा हुआ है।

यहाँ पर एक छोटी दुकान दिख रही है दुकान की शटर में पेन्ट नहीं है दुकान खुली हुई है दुकान की शटर के ऊपर एक --